कार का कलर लाल रंग का दिखाई दे रहा है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है जो चेयर पे बैठा हुआ है।

पीछे पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

बाजू में बिल्डिंग का गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

दिवार दिखाई दे रही है। दिवार के ऊपर एक नीला रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाजु में एक सफ़ेद रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

अलमारि में ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा है अलमारि के सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो की काले रंग का है।

बोर्ड पे सुधा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल का फ्यूल पंप दिखाई दे रहा है। एक आदमी दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में एक स्कूटी दिखाई दे रही है। आगे में रोड दिखाई दे रहा है। रोड पे कार दिखाई दे रही है।

उसके चारो तरफ के गेट दिखाई दे रहे है गेट पे पिलर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में गुफा दिखाई दे रहा है।

ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा है।

उसके आगे में एक लाल रंग का बैग दिखाई दे रहा है।

कार दिखाई दे रही है वैन दिखाई दे रहा है।

एक गुलाबी रंग का केक दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग की डिजाईन बनी हुई दिखाई दे रही है उसके ऊपर-ऊपर चेरी रखी दिखाई दे रही है।